ऊपर वाइट कपड़ा यूज़ किया गया है।

मुझे बहोत सारी घास उगी हुई दिखाई दे रही।

एक औरत रेड साड़ी में खाती हुई नजर आ रही है।

यहां पे एक ब्लू टेंट और एक और टेंट दिखाई दे रहा है।

आसपास में बहुत सारी चीज जैसे की हेयर ड्रायर और कंघी रखी गए है।

ये एक एक्टिवा सर्विस की दुकान दिखाई दे रही है।

और एक आदमी ब्राउन जैकेट पहने हुए नजर आ रहा है।

यह कोथास कॉफी की दुकान नजर आ रही है।

दो गेट है वो बहोत बड़ा नज़र आ रहा है।

तो इसकी टेबल है वो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है।

इस रूम की दीवार पे बहोत सारी चीजें ड्रॉ करी हुई है।

एक सोफा बनाया गया है ब्लैक कलर का और बहोत सारी चीजें टेबल पे रखी हैं।

जो दवा खाना है उसका बिल बोर्ड नजर आ रहा है।

पीछे बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं और बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है।

जी_एम_ई_आर_एस मेडिकल कॉलेज वलसाड ये बिल्डिंग ब्लू कलर की है।

ये एक होटल स्वाद काठियावाड़ी चाइनीस पंजाबी की फोटो दिखाई दे रही है।

और एक आइसक्रीम पार्लर पीछे दिखाई दे रहा है।

ये एक मेडिकल स्टोर की फोटो दिखाई दे रही है।

ये एक फोटो स्टूडियो की फोटो दिख फोटो स्टूडियो की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां पे सिल्वर कुर्सी में बहोत सारे लोग वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इधर सामने एक रेड डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

दो सिल्वर की टेबल दिखाई दे रही हैं जहां पर लोग खड़े हो के खा रहे हैं।

से की सिल्वर ब्राउन और साइड में बहुत सारा स्क्रैप पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक धर्म सम्मेलन की फोटो नजर आ रही है।

जो ये साइट है उसके ऊपर बहुत सारे आदमी चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक खुले मैदान की फोटो दिखाई दे रही है।

ये एक माधव प्रीमियम क्वालिटी किचन की फोटो दिखाई दे रही है।

एक पानी का जग बाहर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का उसके ऊपर ग्लास रखा हुआ है।

पास में ही तिरस का बैनर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का और एक आदमी का फोटो फोन दिखाई दे रहा है।